एक बोर्ड लगा हुवा है उसमे लिखा है मिनी ओटो उजाला ओटो मोबाइल्स उसके नीचे एक भैया खड़े है पीली शर्ट पहने --

वो यलो कलर का पुम प्यूमा का शर्ट पेहना (पहना) हुआ है ब्लेक कलर का पेंट लोवर --

यहाँ पे ये कोई फंक्शन हो रहा है इस फंक्शन में बोहोत सरे टेबल्स लगी हुई हैं जिसमे ए खाना बफर चल रहा है और बोहोत सारे लोग खा रहे हैं खाना और बोहोत सारी लाइट लगी हुई हैं।

ये ये एक बहोत बड़ा ब्रिज है। ब्रिज की । ये डेम है। । दूर-दूर तक में पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे एक खंबा टाइप है।

हैं और एक अ नीला आसमान हे पेड़ मे बहोत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं रेड एण्ड व्हाइट --